बहुत सारे कुर्सियां लगे हैं एक बड़ा सा टेबुल लगा है बहुत सारे लाइट लगे हुए कैमरा दिख रहा है।

एक बड़ा सा बोर्ड पे बड़ा सा फोटो लगा--

बहुत सा एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारे लाइट दिख रहे--

बहुत सारे आदमी खड़े हैं एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

एक आदमी घर के बाहर में खड़ा एक लेडिस अं घर के अंदर में खड़ी हैं।

ये बहुत सारी स्कूटी मोटरसाइकल --

ये एक मछरी हट्टा है मछरी हट्टा में ढेर सारे मछली हर छोटा बड़ा में बिक रहा--

बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं मछ्ली बेचने के लिए बहुत सारे साइकिल लगा हुआ है--

बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है ढेर सारी यहां--

एक बहुत बड़ा सा दुकान है दुकान के अंदर में--

एक बड़ा सा दुकान है दुकान के अंदर में ढेर सारे आदमी बैठे हुए बड़ा ढेर सारा कुर्सी पर है।

ये जिम है जिम का रूम है रूम में डे सारे बोल लगे हुए जिम का दम्ब --